ऊपर में बहुत सारा छत में पुराना हो चुका--

इस चित्र में बहुत तीन चार लड़के दिख रहे हैं एक लड़की है जो चाय पी रही है।

इस चित्र में एक ट्रक का डला लगा हुआ है जिसके ऊपर एक काउंटर रखा हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं एक बड़ा सा गेट बनाया जा रहा है।

और ऊपर में बैलून ब्लैक और पीले से सजाए हुवे है दूर में एक फोस्टर लगा हुआ है ऊपर तीन पांच लाइट दिख रहे है।

इस चित्र में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

जोकि एक टेबुल के गोले गोले बहुत सारे कुर्सियां भी लगी हुई है।

नीचे सारे बहुत सारे रबड़ लगे हुए है।

चित्र मे दिखाया जा रहा है कि यहा पे इस घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है इसमे बहुत सारे लोग खड़े है।

सी यू बिटवीन नौ ए_म छः ए_म लिखा हुआ है।

जो कि गोले गोले बहुत सारे रैक बनाए हुए हैं सभी में अलग अलग प्रकार का मिठाइयां चॉकलेट ये सब रखे हुए हैं।